बहुत ही सुंदर नदी है बहुत ही अच्छा नदी है बहुत ही सुंदर है पुल भी बना हुआ है बहुत अच्छा पक--

ऊपर बगीचे मे एक लेडिस इधर--

बहुत बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा है।

बहुत ही सुंदर जगह बहुत ही अच्छा--